इस चित्र में दुकानदार मोबाइल चला रहा है और उसके पीछे बहुत सारे वस्त्र पड़े है और

इससे दूर से देखे तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।

और उसके सामने दो मशीने भी पड़ी हैऔर एक शटर भी लगा हुआ है पीले कलर का--

ये चित्र एक मिठाई की दुकान की है जिसमें अलग अलग मिठाईयां लगी हुई है।

ये चित्र खिलौने की दुकान की है जिसमें बहुत सारे खिलौने पड़े है।

ये चित्र इस चित्र मे टेबल के ऊपर एक व प्लेट पड़ी है।

प्लेट के ऊपर कबाब रखा हुआ है कबाब के पास मे हरी चटनी भी है।

जो की गुलाबी रंग के और सफेद कलर के है और पास मे उसके तीन औरते खड़ी है।

उस आदमी के सामने बहुत सारी टोकरियां रखी हुई है रंग बिरंगी--

इस चित्र में बहुत सारे कुर्सियां और टेबल लगे हुए है।

बहुत सारे पंखे भी लगे हुए है।

सेकड़ों के रंग पीले हैऔर बाकी मशीनो के रंग काले है।